ये चित्र मा हम तें बड़ी जगह दिखेण लगीं जे फणा हम तें बड़ा बड़ा पहाड़ छिन दिखेण लग्यां वख दा हम तें बड़ा बड़ा जंगल अर वख दा हम तें बड़ा बड़ा डाला दिखेण लग्यां।

जगदा हम तें बहोत सारा डाला छा दिखेण लग्यां यमणु हम तें एक स्वाणु भिट्ठु अर एक तपर दिखेण लग्युं जे का किनारा दी हम तें कुछ लाल फुल की डाली दिखेण लगी अर बिच्च मा एक चाल छ दिखेणी।

ये चित्र मा हम ते एक बड़ु पहाड़ छ दिखेण लग्युं जै का अगाड़ी बिटि हम ते एक काट दिखेण लगीं उंडे तरफ हम ते कुछ डाला दिखेण लग्यां।

ये चित्र म हम तें एक बड़ी जगह छ दिखेण लगीं जखम हम तें एक मैदान दिखेण लग्युं जे का किनारा दी हम तें एक इमारत दिखेण लगीं जे फर पिंग्लू अर लाल रंग छ हुयुं।

अर एक बड़ु गेट दिखेण लग्युं जे का एंच हम तें एक बड़ु बोर्ड वे का पैथर हम तें एक बड़ी इमारत जे पर पिंग्लू रंग छ होयुं पिछाड़ी फणा हम तें कुछ डाला दिखेणा।

बिच फुंडा कुछ एक दुई ताला दिखेण लग्यां कुछ एक दुई खम्बा भी और टावर भी दिखेण छन लग्यां। पैथर फुंडा हम त बड़ा बड़ा पहाड़ बगता जंगल छन दिखेण लग्यां।

जखा कुड़ा कु रंग हम ते सफ़ेद दिखेण लग्युं येका भैर बिटि एक बोर्ड दिखेण लग्युं जैका एंच कुछ लिख्युं च अगाड़ी हम ते एक गेट दिखेण लग्युं जैकु रंग नीलू च फंडे बिटि हम ते एक और कुड़ु दिखेणु।